इसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है रेड कलर का।

जिसके नीचे एक बस खड़ी हुई है सफेद काली लाल कलर की।

इसकी दीवारों का कलर पीला लाल बैंगनी है।